यहां पे सुनसान जगह दिख रहा है और पानी काफी ज्यादा है यहां।

कुछ अच्छा सा डेकोरेशन सजा हुआ है।

यहां पे एक मकान बड़ा सा है शटर लगा हुआ है।

एक मशीन दिख रही है एक व्यक्ति दिख रहा है।

एक रास्ता भी है आस पास पेड़ है।

यहां पर कोल्ड ड्रिंक की दुकान है।

बाहर का लोकेशन ठीक ठाक दिख रहा है।

एक ब्लू कलर की गाड़ी दिख रही है यहां।

कुछ खिला रहे हैं टीचर वगैरा--

यहां का डेकोरेशन भी बोहोत ही बढ़िया सजा रहे है।

यहां पे एक दुकान है बुक्स की यहां पे दो व्यक्ति बैठ के के फोन पे बात कर रहे है।

यहाँ का यहाँ पे सिमिलर के_डी कॉलेज दिख रहे हैं यहाँ पर--

यहां का लोकेशन बहोत ही बढ़िया दिख रहा है यहां का खंजर जैसा पत्थर जैसा खंजर है यहां पे।

डेरी की दुकान है यहाँ पे एक पिकअप गाड़ी खड़ी है यहाँ पे।

यहां पर कुछ मंदिर जैसे दिख रहे है यहां का--

यहां से पानी की फुहारे निकल रहे हैं छोटी से टंकी जैसा है।

यहां पर बेडरुम है यहां पे दो बेड लगे हुए--

यहां का प्रोफेशनल बेड जैसा दिख रहा है।--

दो मंजिल की स्कूल है दिख रहा है यहां पर अच्छे से।

यहाँ पे पौधे दिख रहे हैं कुछ झाड़ियाँ जैसी दिख रहे हैं। यहाँ पे --

कुछ अच्छी सी स्कूल है प्रोफेशनल स्कूल जैसी दिख रहे--

बहोत ही बढ़िया दुकान जैसा लग रहा है यहां पे कुछ आस पास पत्रिका लगा--

एक कार खड़ी है एक वाइट कलर की कार आ रही है।

लग रहा है कि कुछ बड़ा सा फंक्शन रखे हैं जैसे बजा रहे हैं बहोत ही नाइनटीन नाइन मकान ए मकान बी --

एक व्यक्ति पीछे काटा है चल रहे हैं इसमें--

चल प्रश्न शाला नाम है उसका करिश्मा विद्यालय इंदौर दूर का स्कूल लग रही है यहां पर लोकेशन --

यहां का लोकेशन बहुत ही बढ़िया दिख रहा है।